टी -शर्ट शर्ट और एक निचे पेंट पहना हुआ है ओ किसी चीज के पास बेठा है जो ऐसा मशीन जैसी दिखाई दे रही है।

यह किसी चीज की मशीन है यह नही है एक यह मशीन --

सामने वीडियोकॉन का ऑफिस दिखाई दे रहा है उसके नीचे सैमसंग --

का शायद मोबाइल दे किसी चीज की शॉप है उसके बाजू में एक ओपो का फ़ोन का लगा हुआ है।

सामने एक आदमी पिकनिक मनाते हुए नजर आ रहे है ऐसा लग रहा है जैसे वो पिकनिक पर आये है उसने अपना तंबू गाड़ रखा है और--

और निचे पानी की बोतल और कुछ सामान भी रखा --

यहाँ उस झरने जैसे पानी निकल रहे है छोटी छोटी छेदों से और यह उपर की तरफ बना रहे है जो की साइड में पेड़ पोधे भी लगे है बाइक भी खड़ी--

मुझे सामने मोटरसाइकिल के रिपेयरिंग की दुकान दिखाई रही है कुछ लोग है जो की मोटरसाइकिल को रिपेयर कर रहे हैं और--

सामने गन्ने की खेती दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे गन्ने उगे है और यह--

अ शायद गेहू या फिर किसी चावल वावल की फसल है जोकि यहाँ पर लगी हुई है।

ये इसका गेट खुला हुआ है और यहां पर वेलकम ए_टी_एम भी लिखा हुआ है जोकि--

जोकि काफी सारे लगे हुए है और यहाँ पर काफी सारे लोग बेठे हुए है जोकि टेबल के उपर बेठे हुए दिखाई दे रहे है सामने स्टेज जैसा--

प्लेट में काफी सारा खाने का सामान रखा हुआ है और यह--

अ पाने वो काफी गहरा दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ बिछा हुआ रस्ता है जोकि--

पास में एक आदमी खड़ा है और वो--

शायद कोई फो एरोप्लेन की फोटो वगैरह ले रहा है यहां पे काफी ज्यादा लाइट लगी हुई है और ये लाइट जो है वो बो वाइट बो व्हाइट कलर की लगी हुई है।

और उसके पास में डस्टबिन जैसा कुछ रखा हुआ दि--

एरिया है वो काफी ज्यादा भरा भरा दिखाई दे रहा है और शाम का टाइम है और उसके पीछे एक शॉप है यहाँ पर कुछ लोग भि खड़े है जो बाइक --

तो दोनों साइड लगे हुए है मंदिर के और मंदिर--

सामने एक घर दिखाई दे रहा है घर के--